एक-एक कर के बिस्किट दे रहे हैं और सभी बहुत उत्साह के साथ हंस रहे हैं और सभी बच्चे इधर-उधर भी देख रहे हैं काफी सारे बिस्किट रखे हुए है टेबुल पे जो कि बहुत ही अच्छा है और --

यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं फूल भी बहुत साडा है और म साइड में भी म एक बोतल रखा हुआ है।

छत भी ढलइयां किया हुआ है जो की देखने में बड़ा मस्त ही जैसा लग रहा है देखने में बहुत ही अद्भुत देखने में बहुत ही खुला --

हवे और यहाँ पे बहुत अ सारे कपड़े और डिब्बा में ए पैकिंग किया हुआ है जो के बहुत अच्छा दिखने को लग रहा है।

अम्म और साइड में बहुत ही बड़े बहुत बड़े पिलर अम्म खड़े हुए हैं जो की देखिए में अम्म यहाँ पे बहोत ज़्यादा चल रहा है बहोत लंबा चौड़ा अम्म फील्ड है जो कि काफी ही सुंदर अद्भुत देखने को मिल रहा है।

ये एक बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिल रहा है और ये पार्क जैसा ही लग रहा है उसके आगे बहुत ही बड़ी बिल्डिंग भी है जो किसी --

सभी में चम्मच लगे हुए हैं जोकि दिखने में वाइट रेड और ब्लैक और म्म खीरा बहोत ही म्म मीठा लगता है खाने में चावल बहोत ही --

एक पुरुष खड़े हैं जो कि बैग लटकाए हुए हैं और खड़े हैं कही जाना चाह रहे हैं जो कि साइड में एक बस लगी हुई और एक साइड में देखने को मिल रहा है दिया हुआ है और साइड स

एक प्लेट है जो की ऐ सिनही मछली एक ऐसी मछली है जिनमे सभी प्रकार की मछलिया आती है और एक यहाँ पे साइड में पुरुष खड़े हुए हैं

जिनमे ईटा से पलास्टर किया हुआ है ईटा से साइड मे स्कूटी लगी हुई है। और यहां पर बोहोत सारा लोग भी मिल रहे है।

पेड़ पौधे है दिख रहे हैं जो कि बहोत ही कहीं ब्लैक कहीं हरियाली कहीं व्हाइट देखने को मिल रही है और इस साइड भी देखने को बहोत ही अच्छा देखने को मिल --